कुछ पानी न-नदी भी दिखाई पड़ रही है इस तरफ कुछ मकान जैसे बने हुए है बहुत सारे काले तार भी दिखाई पर रहे है।

रास्ता लग रही है और उसमें दो कार गाड़ी जा भी रही हैं यहाँ पे कोई ऑफिस सा लग रहा है बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं कुछ खम्भे भी दिखाई पड़ रहे हैं जिनमें काले तार भी दिखाई पड़ रहे है।

एक ये नदी नज़र आ रही है| इस नदी में पानी भी निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है| कुछ नदी के अंदर कुछ पेड़ भी छोटे-छोटे खड़े हुए हैं | कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं उस तरफ कुछ पहाड़ भी बने हुए हैं जिनपे पेड़-पौधे दिखाई पड़ रहे हैं|

यह बुद्धा जी की मूर्ति दिखाई पड़ रही है यह मूर्ति काली है और इन्होंने जो वस्त्र पहने हैं वो पीले कलर के लग रहे हैं।

ट्रेन आती हुई नजर आ रही है जो ट्रेन रुकी हुई है और यह ट्रेन नीले कलर की दिखाई पड़ रही है और बीच में पीले-सफेद की पट्टी बनी हुई है।

और एक जैसे उसमे कुछ नमक के डिब नमक के पैकेट इस तरफ भी कुछ डब्बे पे रखे हुए है| पीछे की तरफ भी कुछ लाइन जैसी बनी है उसमे भी कुछ डब्बे सैंपल के रखे हु --

पेड़ भी दिखाई पड़ रहे है पेड़ो के सफेद चूना से पूता हुआ है उस की हरियाली और एक बाइक भी खड़ी हुई है उस तरफ एक खजूर के पेड़ बहुत सारे दिखाई पड़ रहे इस तरफ ।

बालू का ढेर लगा हुआ है और कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं | बहुत सारे मकान भी दिखाई पड़ रहे हैं जो सफ़ेद कलर पे पुता हुआ है| इस तरफ एक मकान जो सफ़ेद से बना तैयार नहीं हुआ--

उसके पड़ोस में एक मकान बना है वो पूरी तरह से बना बन कर तैयार नहीं हुआ है। आगे बहुत सारे बांस ओर बल्ली पड़े हुए हैं। कुछ चिट खुररे टूटे-फूटे भी पड़े हुए हैं।